और ऊपर कि तरफ एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है जिस पर बस्तर डेयरी फार्म लिखा हुआ है।

और आगे की तरफ कुछ पुरुष खड़े दिखाई दे रहे हैं पुरुषों की संख्या पांच है तथा आगे की तरफ एक लाइट लगी हुई है।

इस चित्र में एक कमरे के अंदर कुछ टेबलें --

तथा ऊपर की तरफ कुछ लाइटें जलती हुई दिखाई दे रही हैं।

इस चित्र में बहोत सारे व्यक्ति एक लाइन में खड़े दिखाई दे रहें हैं।

इस चित्र में एक व्यक्ति एक खम्बे को पकड़े हुए दिखाई दे रहा है।

इस चित्र मे एक बोहोत सुंदर मकान दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर के तरफ कुछ लाइटें लगी हुई दिखाई दे रही हैं। मकान के नीचे की तरफ एक व्यक्ति खड़ा दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में एक व्यक्ती माइक पर कुछ बोलता हुआ नज़र आ रहा है | माइक पर बोलने वाले व्यक्ती ने नीले रंग के कपड़े पहनें हुएँ हैं।

इस क्षेत्र में कुछ मकान खड़े दिखाई दे रहे हैं तथा कुछ व्यक्ति भी खड़े दिखाई दे रहे हैं। व्यक्तियों के पीछे की तरफ एक चार पहिए की गाड़ी खड़ी दिखाई दे रही है तथा चार पहिए की गाड़ी के आगे की तरफ एक स्कूटी खड़ी दिखाई दे रही --